और पानी में बहुत ही आग टाइप का जल रहा है दिख रहा है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

जिसपे बहुत सारे बाइक खड़े हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा दुकान दिख रहा है।

जिसमें ऊपर में बहुत सारे रंग बिरंगे लाइटे जल रहे हैं।

और अगल बगल बहुत सारे कपड़े और डिब्बे दिख रहे हैं।

जिसके अगल बगल एक जेंस और एक लेडीज़ है।

राज हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

एक गु बाइक लगा हुआ है।

और नीचे एक कुर्सी बनाया हुआ है।

टेम्पु है ट्रक है बहुत सारे स्कार्पियो ब्लोरो है।

इसके दोनों साइड कुर्सियां लगी हुई है और लाल और पीले रंग के हैं।

और गमले में फूल लगाए हुए हैं।

उधर से भी लोग कोड़ी से छोल रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा ए_टी_एम दिख रहा है।